मुद्रित कागज़ का एक टुकड़ा प्लास्टिक विनाइल या --

इनके यहाँ पर उचित रेट पर सब कुछ सेवाएं उपलब्ध होती हैं।

तथा शाम सुबह यहाँ पर आरती --

इसमें लोगो का मन शांत होता है ।

पे लोग अपने-अपने अलग-अलग टाइप की डिफरेंट कटिंग करवाने आता है।

यहाँ पर लोगों को कुछ -कुछ समन शुल्क का --

जिससे वो लोग अप यहाँ पर दर्शन कर पाते हैं ।

इससे योगा करने से कुछ शरीर में विभिन्न प्रकार के --

लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से --